ये एक मंदील है और मंदील के चारों तरफ जो है बहुत अच्छे अच्छे पोधे लगाए गए हैं जिससे की इ ये मंदील की सुन्दरता और ज्यादा बढ़ती जा रही है और मंदील जो है ए --